इस चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ एक घर है | एवँ घर के बगल में एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई है| एवं एक और कार जिसमे से फोटो खींचा गया है उसमे एक मूर्ति भी है।

जो काफी सुन्दर है इसमें मुझे बोहत सारे खम्भे भी दिखाई दे रहे है थता ईसर घर का रंग नीला है इस चित्र में मुझे एक खिड़की एक दरवाजे तथा कुछ खिड़किया भी नजर आ रही है।

इस चित्र मे मुझे तीन ज़ेबरा नजर अ-अ रहा है जो घास चार रहे है इस चित्र मे मुजगहे बहोत सारे पेड़ पोदहे दिखाई दे रहे है --

बहोत स बहोत लाइट जल रही है तथा इसका रंग सफेद है इसमे मुझे एक प्रोल दिख रहा है जिसका रंग ऑरेंज है।

तथा मुझे तीन चार रिस ऋ रीक्शा भी दिखाई दे रहा है इस चित्र मे मुजे एक सूखे पेड़ की डालिया दिखाई दे रही तथा फेस --